उसके बगल में एक नीला कलर का घर है।

और उधर बहुत सारे पेड़ है।

एक ब्लैक कलर का कुर्सी है।

बोरे के नीचे एक बाल्टी है।

और बाल्टी के ऊपर व्हाइट कलर का बोड़ा है।

मुझे एक घर दिख रहा है।

इसे बहुत सारे फूलों से सजाया हुआ है।

ये एक योगा है योगा बच्चों को सिखाई जा रही है।

एक आदमी बाइक से जा रहा है और एक बगल में स्कूटी खड़ा है।

पांच ठो खंभे में लाइट लगे हुए हैं।

मुझे एक पुल दिख रहा है।

और उसके नीचे बहुत बड़ा नदी है और उसके बगल में एक टावर है।

इस पोल पर रेलिंग दिया हुआ है।

खंभा के बगल में एक स्कूटी है।

और पेड़ के पीछे बहुत सारे लड़के योगा कर रहे हैं और उसके पीछे बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

के ऊपर एक मंदिर है।

उस पानी का रंग नीला है।

यहां पे एक दुकान है।

और उस दुकान पर फूलों से सजाया हुआ है।

रूम का कलर व्हाइट है और बगल में भी एक रैक है।

उस जलेबी का रंग पीला है।

के बाहर बहुत सारे दीवाल हैं।

यह एक रूम दिख रहा है जो ब्लू कलर का है।

और पतंजलि का पेस्ट भी रखा हुआ है।

जिसमें बहोत सारे मछलियां है।

और बहुत सारे छह रेड कलर का कुर्सियां हैं और नीचे ग्रीन कलर का मैट बिछाया हुआ है।

और उसके अगल बगल बहुत सारे पौधे और घास हैं।

बहुत से मछली मर गए हैं और मछली के ऊपर से एक तार जा रहा है।